दृश्य में दिखाया गया है यह एक ऑफिस है जिसमें कुछ लोग काम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगी हुई हैं।

यहाँ ईंटो की दीवारों बनी हुई है जो पुराना मालूम होता है।

इस दृश्य में दिखाया गया है यह एक नदी है नदी के दूसरी ओर चबूतरा वगैरा बनाई गई है।

इसमें वाशिंग मशीन फ्रिज वैगरा-वैगरा रखी हुई है जिसमें एक सेल्समेन भी नजर आ रहा है।

ये दृश्य में दिखाए गया है की यहाँ सोने का कमरा है।

इसमें एस्कलेटर लगी हुई है सीढिया है यहाँ एक बच्चे की बड़ी-सी खिलौने भी है।

यहाँ बहुत ही हरे-हरे पेड़-पौधे हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यह एक मैदान है।